ये घर के अंदर का सीन है ये लेत मशीन उसीन कुछ-कुछ रखा गया है।

सामने बाइक खड़ी गाड़ी खड़ा है पैसा लेन-देन किया जाता है।